यहाँ पर एक बड़ा सा भोलेनाथ का मंदिर दिखाई दे रहा है बड़ी सी भोलेनाथ की मूर्ति बनी हुई है जिसने गले मे बोहोत सारे मालाये पहन रखी है यहाँ पर बड़े बड़े पिलर दिखाई दे रहे है।

आदमी के पीछे एक दीवार दिखाई दे रही है जिसमें काफ़ी सारी पिक्चर्स लगी हुई है यहा पर कुछ लोग खड़े हुए और बैठे हुए दिखाई दे रहे है छत में कुछ पंखे लगे हुए है यह पर एक पर्दा डला हुआ हैं।

यह एक बाइक का शोरूम है जहा पर बहुत सारी बाइक दिखाई दे रही है यह पर एक यल्लो और ब्लैक कलर की बाइक दिखाई दे रही है यह पर दो टेबल रखे हुए है जिस के उपर बाइक खड़ीं हुई है यह पर ब्लैक कलर क--

यह एक बड़ी सी जगह है जहा पर एक रेड कलर की कुर्सी पड़ी हुई है यहा पर बहोत सारे पिलर लगे हुए है।

यहाँ पर एक पंचिंग बेग टंगा हुआ दिखाई दे रहा है जो की जंजीरों से बंधा हुआ है यहाँ पर बहुत सारी जंजीरें पड़ी हुई दिखाई दे रहें है कुछ सामान टंगा हुआ है कुछ कपडें टंगे हुए दिखाई दे रहे है कुछ डंबल दिखाई दे रहें है।

इन गाय को रस्सी से बांध रखा है उसके सामने एक बड़ी सी परात रखी हुई है कुछ घासें पड़ी हुई दिखाई दे रही है दूर बड़े बड़े जंगल दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर छत में कुछ लाइट लगी हुई है सामने की दिवार पे कुछ गेट लगे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर शीशे का गेट दिखाई दे रहा है यहां पर वेफर की एक शॉप भी दिखाई दे रही है जिसमें बहोत सारे वेफर्स टंगे हुए है।

यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए है जिन्होंने होली खेल रखी है इनके कपड़े पर काफ़ी सारा कलर लगा हुआ है।

यह पर बलू और यल्लो कलर के ड्रम रखे हुए है यहां पर कुछ लोग खड़े हुए है यहाँ पर एक अंकल खड़े हुए है जिन्होंने कम्मल ओड़ रखा है यहाँ पर काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है कुछ घासे भी दिखाई दे रही है।

छत में कुछ व्हाइट कलर के पंखे लगे हुआ दिखाई दे रहा है यह की दीवार दीवारो पर व्हाइट कलर का पैंट किया हुआ है सामने ब्लैक कलर के गेट दिखाई दे रहे है।

व्हाइट कलर घर दिखाई दे रहा है जो काफी सुंदर लग रहा है जिसमे बहुत सारी जीने दिखाई दे रहे है जोकी काफी साफ सुथरे दिखाई दे रहे है इसमे व्हाइट कलर के शीशा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।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

ये एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पर बोहोत सारे लोग खड़े हुए है ये लोग ऑरेंज कलर की ड्रेस पहने हुए है सब ने मास्क पहन रखा है और सबने हेलमेट पहन रखा है।

ये एक बड़े सा स्टेज है जहा पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है स्टेज पर एक बड़ा सा सोफ़ा दिखाई दे रहा है जिसमे तीन लोग बैठे हुए है इस स्टेज के दोनों साइड बड़े बड़े गमले --

रखे हुए दिखाई दे रहे है इस स्टेज के सामने बोहोत सारी चेयर्स लगी हुई है जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए है इस स्टेज को काफी ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ है जो काफी सुंदर लग रहा है।